आसमान साफ दिखाई दिख रहा है हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे--

साइड में एक टू व्हीलर खडो हुई दिखाई दे रही है ऐसा में कई सारे--

व्हाइट कलर की टाइल्सें लगी हुई दिखाई दे रही हैं नीचे व्हाइट कलर की टाइल्सें लगाई हैं आजू बाजू व्हाइट कलर की टाइल्सें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

लोहे के खंभे ल लोहे के खंभों की सारी वायरिंग लगी हुई दिखाई दे रही है शाम का समय दिखाई दे रहा है सामने और कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे--

हो सके तो कई सारे कुर्सियां बेंच रखे हुए दिखाई दे रहे जिसमें कोई नहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा।

कई सारे यहाँ कॅन वॅन रखें मग्गे वग्गे छन्ने गन्ने का जूस की मशीन हैं कई कई सारे चीजें बेंच के ऊपर ये सब सामान रखा गया हैं साइड में है--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर दो दो से तीन मंजिले के बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे जिस बिल्डिंग पूरी व्हाइट कलर के पुटी हुई दिखाई दे रही है साइड में कांच के गेट --

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक दुकान जूते की शॉप दिखाई दे--

एक रेड कलर की दिखाई दे री हैं व्हाईट कलर की टाइल्स है उधर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं व्हाईट कलर की सामने की ओर।